चेयर है एक लड़का जेंट्स खड़े हुए हैं जो की कैप लगाए है पैंट शर्ट पहने हुए हैं।

सामने रोड है रोड के उस साइड में कुछ बिल्डिंग बनी हुई दुकानें लगी हुई है |

यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है जो की थ्रीफ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है और जिसके बाहर एक दो तीन बाइके खड़ी हुई है।

--और इनके एक बाइक पर एक पर्सन खड़े हुए हैं और बिल्डिंग के नीचे साइड में एक गेट लगा हुआ है। और--